अपने गाड़ियों मे पेट्रोल-डीजल भरा सकते है ।

लाइटें लगाई गई हैं।

टेंपू खड़े हैं चार-चक्के खड़े हैं।

ईसाई धर्म के लोग यहां पर प्रार्थना करते हैं।

और इस जिम में हम बोहोत सारे लोग कसरत करने आते हैं।

यहां पे लड़कों के जींस शर्ट और तरह-तरह के कपड़े मिलते है।